उसमें एक पंछी बैठी हुई है।

जहां पर ऊपर में बहुत सारी हांडी रखी हुई है.

और उसके नीचे मटन बन रहा है।

सीढ़ी हे और ऊपर गेट बंध हे.

बिच मे एक गुफा हे जहाँ अंधेरा है.

जिस्में की कोयला भरा हुआ--

और नीचे मे सड़क पर कुछ आदमी भी गतिविधि करते नजर आ रहे है.

बगल मे टेबल पे भी है.

एक गाड़ी धोनेका सेंटर है. ज--

जिसमे की रैंप लगा हुआ है और बगल में गाड़ी धोने का मशीन रखा हुआ है.

इसके बीच में लाइट लगा हुआ है।

जिस पे बहुत सारा स्पीकर रखा है।

जो अत्यंत सुंदर दिख रहा है.

यह यह एक रूम है.

यह एक कपड़ा साफ करने का जगह है।

जो बाँस करकट और पाइप से बना है।

और निचे दो आदमी हस रहे हैं.

जिसके ऊपर दो काला टंकी रखा हुआ है।

कुछ खिड़कियां भी है.

डैम के ऊपर कुछ लोग बैठे हैं।

और बहुत सारा लाइट है।

निचे एक झंडा भी है.

सूरज लिए है और मैदान हरा भरा है.